इस इमेज में एक झोपड़ी की जेनरल स्टोर नजर आ रही है इस दुकान के बाहर कुछ गुड्डे लटके हुए है टेडी बेयर लटके उनका कलर पिंक है येलो है रेड है ब्लैक है।

इस इमेज में एक लड़का कार की मरम्मत कर रहा है जो की वाइट कलर की कार है।

इस इमेज में एक पंडाल के नीचे कुछ लेडीजस लोग जिनके हाथ में कुछ दिख रहे है ग्रीन कलर के बड़े बड़े पत्ते दिख रहे है।

एक बैनर लगा हुआ है संत का एक फूलों की माला दिख रही है जो की येलो और ऑरेंज --

इस इमेज में कुछ लेडिज़ लोग खाना बना रही है एक बड़े से बर्तन में कुछ ब्लैक कलर के बर्तन रखे गए है।

एक लड़का एक गार्डन में एक पोल से खड़ा नजर आ रहा है जो को व्हाइट कलर शर्ट ब्ल्यू कलर की जीन्स ब्लैक कलर का शूज पहना हुआ है।

चश्मा लगाके है पोल का कलर ग्रीन है और व्हाइट है उसके सामने एक हेलमेट रखा हुआ है जिसका कलर रेड दिख रहा है।

एक बोर्ड लगा हुआ हैं रेड कलर का उसमे एयरटेल फोर जी लिखा हुआ हैं एक दुकान नजर आ रही हैं दुकान के ऊपर बैनर हैं बैनर पे आइसक्रीम का पोस्टर हैं उसमे कुछ तेलगु में लिखा हैं।

इस इमेज में एक लंबियो आदमियों की बरोबर लाइन लगी हुई है।

एक में बहुत सारे लोग खड़े हैं एक मसाल पकड़ के खड़ा है एक बाजा बजा रहा है जोकी येलो कपड़े पहना हुआ है।

इस इमेज मे ग्राउन्ड नजर आ रहा है कुछ बच्चे ग्राउंड पे सर्कल बना के जम्प कर रहे है सर्कल का कलर येलो पर्पल ऑरेंज दिख रहा है।

इस इमेज में एक स्टेज की स्टेज के ऊपर बहुत सारी लड़कियां ऑरेंज कलर की ड्रेस में खड़ी है।